यह भी एक होटल है जो की काफ़ी अच्छी होटल है।

और बहुत सारे सब्जी रखे हुए है जैसे पट्टल।

सामने एक गोले बनाए गए हैं जो कि यहां पर रोड टर्निंग के लिए--

और यहां पे सामने एक एक बिल्डिंग है जो कि काफी लंबी चौड़े बिल्डिंग है।

उसके अंदर में बहोत सारी पर्सनालिटी है।

यहाँ पे एक शीशे वाले गेट लगे हुए और गेट पर एक व्यक्ति खड़े हे जोकि टी_शर्ट पहने हुए है।

और तीन लड़कियां जो की एक ही कलर के ड्रेस पहना हुआ है एक जो है रेड कलर का पहना हुआ है ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ --

यह देवगा का स्टेशन है और काफी दूरी पर एक व्यक्ति खड़े हुए हैं स्टेशन पे।

यहां पे डांसिंग के लिए भी अलग बनाया गया हैं जो की काफी सारे इसमें लाइट लगाया हैं।

ज्यादा लाइटिंग कर रहा है यहां पे लिखा हुआ है रूपक लॉज ।

यहां पे बहुत सारी बैग बहुत सारे जूते और बहुत ही आदमी हैं।

बहुत सारे बच्चे जो खेल रहे हैं।

और काफी लाइट लगा हुआ है।

व्हाइट कलर और रेड कलर से सीढ़ी को पेंट किया गया है।

फूलों से सजाया गया है और काफी लंबे दूर तक सजाए गए हैं।

और नीचे में बहुत सारे चेयर और टेबल भी लगे हुए हैं।

और बाहर मे बहुत सारे बाइक खड़ा हुआ है।

यह एक होटल है जहां के बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं।

पास में एक टी_वी भी लगा हुआ है।

काफी यहां पे पेड़ पौधे का भी सीन बहुत अच्छा है।

बाहर में गेट खुला हुआ है।

बाहर से बहुत सारे व्यक्ति जो की समान लेने के लिए खड़ा हुआ है।

यहां पे चार स्टाफ है जोकि एक ही कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।